इस तस्वीर पर बहुत सारे मनुष्य है और पुलिसमैन भी है और तीन गाड़ी है।

बहुत सारे लाइटें भी दिख रहा है।

और खुला आसमान भी है।

और बहोत सारे पेड़ पौधे भी दिख रहा है।

और उनका बैग भी है और कुछ पेपर भी है और पर्दा भी है।

बहुत सारे खाने की चीजों का तस्वीर भी लगा हुआ है।

इस तस्वीर पर मुझे बहुत सारा बिल्डिंग दिख रहा है जहां पर कुछ पहाड़ पर गाड़ी भी है बाइक भी है।

भगवान का तस्वीर भी दिख रहा है।

कुछ प्लास्टिक भी है और टेबल भी है।

जिस तस्वीर में एक प्लेट दिख रहा है।

इस तस्वीर पर बहुत सारा जूस का बॉटल है।

छत भी दिख रहा है और घास भी दिख रहा है।

जिसके अंदर बहोत सारा दरवाजा है और बहोत सारा खिड़कियां भी है।